और ये यहां पे कुछ टेबल और कुछ चेयर लगा हुआ है।

यह दृश्य एक बिल्डिंग के बाहर का है ।

बीच में एक एरिया है जहां पे बहोत सारे पेड़ उगे हुए--

इसमें लिखा हुआ है डेप्ट ऑफ पोस्ट इंडिया ।

और यहां पे बहोत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं।

यहां पे बहोत सारी साइकल लगी हुई है।

टोकरी रखी हुई है जिसमे भूसी रखा हुआ है।

इसके पीछे एक खिड़की है जिसका रेलिंग ब्लू रंग का किया हुआ है।

इसके पीछे कुछ पेड़ लगे हुए हैं इसके बाहर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां दृश्य एक रूम का है जिसका रंग हरा और लाइट ग्रीन है।

और यहां एक डेस्क बना हुआ है जिसमें बहोत सारे समान रखी हुई हैं।

और यहां पे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं।

और एक चम्मच कांटा वाला एक नॉर्मल चम्मच रखा हुआ है।

और थोड़ा झुके हुए हैं साइड में एक वॉल पंखा भी लगा हुआ है।

कुछ निशान लगे हुए हैं जो कि काले काले रंग के है।